इसके पास में भी एक और स्कूटी एक बाइक लगा हुआ है।

यह दृश्य एक रूम का है जिसका दीवार और सीलिंग सफेद रंग का है।

इसका दिवाल गुलाबी रंग का किया हुआ है।

इसके पीछे कुछ परदे लगे हुए--

और नीचे भी बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं जो की रंग बिरंगे है।

यह दृश्य एक रेस्टोरेंट की है जहां पे एक टेबल रखा हुआ है।

उसके पास एक चेयर लगा हुआ है इसके पीछे एक व्यक्ति बैठा है।

और एक जग रखा हुआ है नीचे टाइल्स बिछा हुआ है।

यहां दृश्य एक मस्जिद का है जिसका रंग नीला और सफेद है।

इसके दिवाल पर मनरून रंग भी डिजाइन बना हुआ है।

यहां एक व्यक्ति खड़ा है जो की सफेद रंग का कुर्ता पहना हुआ है।